लाल रंग का है और एक सफेद का ये कार देखने में कुँलिटी और मस्त है फोर बाय फोर यह कार चलाने में भी अच्छे--

ये स्कुल बहुत ही बड़ा है और स्कुल को बीचो बीच एक झंडा फहराने का सुविधा और एक स्कुल के बाहर एक बड़ा सा गार्डन --

और पेड़ के पास एक बड़ा सा टंकी लगाया है और साइड में अल्वेसटर का एक छत है।

ये स्कुल स्टूडेंट बच्चे लोग एक पेंटिंग किया है जो देख रहे है की पेंटिंग घरों का बना--

एक ठो एक पंचायत है ये पंचायत--